आपका फिर से स्वागत है केवल सार देने के लिए कुकीcookie ट्यूटोरियल के पहले भाग में हमने सीखा कि कैसे कुकीसcookies बनाएँ कैसे कुकीcookie को समाप्ति तारिख दें और कैसे विशिष्ट कुकीसcookies को प्रिंट करें
इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए हमने यह भी सीखा कि कैसे सभी कुकीcookie जिनको हमने स्टोर किया है उनको प्रिंट करें
अतः यह मानते हुए कि हम इन कुकीसcookies को बना चुके हैं अगला कार्य मैं यह करूँगा कि इस विशिष्ट कुकीcookie को जिसको मैंने बनाया है यहाँ इस्तेमाल करूँगा यह देखने के लिए कि यदि यह अस्तित्व रखता है या नहीं
ऐसा करने के लिए हम एक फंक्शनfuction नामक isset इस्तेमाल करेंगे
यह मूलतः किसी चीज़ के निर्धारित होने या न होने पर निर्भर करते हुए सही या ग़लत वेल्यु देता है
उदाहरणस्वरुप एक कुकीcookie मैं एक डॉलर का चिह्न लिखूँगा फिर अंडरस्कोरunderscore कुकीcookie
और मैं यहाँ अंदर name लिखूँगा
अतः यदि मैं इसे अंग्रेज़ी भाषा में पढता हूँ तब मैं कहूँगा
if the cookie name is set then we say echo cookie is set
otherwise we will echo out to the user that cookie is not set
यह मानते हैं कि मैंने मेरी कुकीcookie को निर्धारित किया और सब कुछ कार्य कर रहा है जब मैं इसे रिफ्रेशrefresh करता हूँ मुझे एक सूचना मिलती है कि cookie is set
अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कुकीcookie को अनिर्धारित करें
अतः चलिए यहाँ लिखते हैं ठीक अपने if स्टेटमेंटstatement से पहले मैं मेरी कुकीcookie को अनिर्धारित करना चाहता हूँ
अतः unset cookie
अतः केवल बोलने के लिए मैं इस कुकीcookie को अनिर्धारित करूँगा
यह मानते हुए कि यदि आपने इसो अनिर्धारित करना सीख लिया है तो आप इसको भी अनिर्धारित कर सकते हैं
अतः मैं इस name कुकीcookie को अनिर्धारित करूँगा
अतः अनिर्धारित करने के लिए हम वही कमांड इस्तेमाल करेंगे और वह है setcookie
अतः हम कुकीcookie को पुनः तैयार कर रहे हैं
यह नहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह कुछ अर्थ बना रहा है किन्तु यह शीघ्र ही करेगा
अब हम कुकीcookie का नाम कुछ नहीं निर्धारित करेंगे
और हमारी समाप्ति तारिख यहाँ है
मैं एक न्य exp unset के साथ बनाऊँगा
और यह इक्वल होगा time minus 86400 के
यहाँ हमने प्लसplus लिखा है जिसका मतलब है time आगामी है
अब इस वेरिएबल जोकि आगामी time दिखा रहा है के लिए कुकीcookie निर्धारित करके हम वास्तव में अनिर्धारित कर रहें हैं
अतः यदि मुझे कहना हो एक कुकीcookie नामक name जो पहले से ही अस्तित्व रखता हो को किसी भी वेल्यु पर निर्धारित नहीं करना है
और time को आगामी निर्धारित करने के लिए exp unset वेरिएबलvariable का इस्तेमाल करिये फलस्वरूप हमारा कुकीcookie अनिर्धारित हो रहा है
अतः अभी के लिए मैं इस कोड से छुटकारा पाता हूँ और इस पेज को रन करता हूँ ठीक है
कुछ भी नहीं हुआ मानिए मेरी कुकीcookie अनिर्धारित है
अब मैं इस कोड से छुटकारा पाना चाहता हूँ अतः मैं इसे कमेन्टcomment कर देता हूँ
और मैं अपना if स्टेटमेंटstatement वापस पेज पर लिखता हूँ
अब मानते हैं कि यह कह रहा है यदि कुकीcookie name निर्धारित है मैं कुकीcookie को अनिर्धारित करने जा रहा हूँ जिसको उत्तर देना चाहिए cookie is not set
चलिए रिफ्रेशrefresh करते हैं और हमें मिला cookie is not set
और फिर यहाँ से यदि आप चाहें तो आप इसे फिर से निर्धारित कर सकते हैं और आप कूकीcookie की वेल्युस बदल सकते हैं
कूकीcookie की वेल्यु बदलने लिए आपको फिर से setcookie कमांड इस्तेमाल करना होगा
आप लिखेंगे set cookie name और यहाँ केवल एक नई वेल्यु टाइप करेंगे
अतः कूकीसcookies के साथ कार्य करना कठिन नहीं है
यह काफी सरल तरीका है
और यह php में बहुत ज़रूरी चीज़ है
अतः इसको अपने दिल से प्रयोग कीजिये ठीक है देखने के लिए धन्यवाद
यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे बताइए
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद